सेल्फी खेंच रहे हैं और कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं पास में कुछ डंबल वगैरह भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आपको सामने एक स्टेज प्रोग्राम लग रहा है ये कोई शादी समारोह का प्रोग्राम है जिसमें --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

और रूम में है जो कि आस पास गाड़ी के व्यक्ति भी खड़े दिखाई दे रहे है।

ये फोटो आपको दिखाई दे रही है यह एक हार्डवेयर की दुकान है जिसमें कुछ --

और कुछ लड़के भी बैठे दिखाई दे रहे हैं और कुछ--